चित्र उम पिकनिक बनाने के लिए एक उत्तम जगह है।

यह एक विशाल किला लगभग आठ सौ साल पहले मेंढक ने बनवाया था जो उस समय जिले के मुख्यालय था चित्र में --

श्रेष्ठ बैंकेट हॉल्स की श्रेणी में आता है।

पाला पीरियड के बोध गया के स्तूप मोती स्तूप दिखाई दे रहे है जो की अभी इंडियन म्यूजियम में रखे हुए है |

एक पेड़ दिखाई दे रहा है कुछ ईट दिखाई दे रही है और कुछ घास लगी हुई है |

चित्र में कई बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो की आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहे हैं |

यह चित्र बी.डी. वर्ल्ड स्कूल का है।

किस्में शामिल है कुछ केवल इस मिश्रण में देखी गई है।

काफी अच्छी तरीके से इसे सजाया गया है काफी लोग दिखाई दे रहे हैं जो की सेल्फी ले रहे हैं |

कुछ युवतियाँ मनोरंजन के लिए आई हुई हैं और मनोरंजन कर रही हैं।

ऐ.सी. लगा हुआ है।

एक क्रेन दिखाई पड़ती है कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

हालाँकि ये निश्चित नहीं है की इसका उपयोग कैसे किया गया।

चित्र में काशी विश्वनाथ एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक मन्दिर दिखाई दे रहा है जो भगवन शिव को समर्पित --